सामने एक बहुत बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

चटाई पर बहुत सी औरतें बैठी हुई हैं।

शोरूम में बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

इसी के दोनों साइड में बलफ लगे हुए हैं।

सामने हमें बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

घर के आगे एक थालिया रखी दिखाई दे रही है घर के पीछे बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही हैं।

सोफे के पीछे हमें पर्दो की बहोत अच्छी सी सजावट दिखी दि दिखाई दे रही है।

पेड़ के बगल में एक गुमटी जैसी रखी दिखाई दे रही है।

मोर के आगे हमें बहोत बड़ा सा खंबा दिखाई दे रहा है।

औरतो के पीछे बहोत से पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

मस्जिद के बगल में हमें एक घर दिखाई दे रहा है।

मस्जिद का गेट का कलर ब्लू है और सीढ़ियों का कलर भी ब्लू है।

छत में झूमर दिखाई दे रहे हैं झूमर के नीचे एक और आदमी खड़ा--

झूमर के पास बहोत सी लाइटें लगी दिखाई दे रही हैं।

सामने हमें बहुत बड़ा सा एक घर दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर बहोत सा सामान लगा हुआ है।

सोखता रखा दिखाई दे रहा है। आदमी के दूसरे साइड में एक बल्टी रखी दिखाई दे रही बल्टी के बगल में हमें कैरेट रखी दिखाई दे रही है।

कैरेट के बगल में हमें एक तराजू रखा दिखाई दे रहा तराज़ू के पास हमें तीन आदमियों के पैर दिखाई दे रहें हैं।

दुकान के आगे हमें पुलिस वाला खड़ा दिखाई दे रहा है।

आदमी के सामने हमें डस्टबिन दिखाई दे रही है।

मशीन के पास दो आदमी काम करते दिखाई दे रहे हैं।

मशीन के आसपास बहुत से पाइप दिखाई दे रहे हैं।

पाइप के बगल में हमें कैमरा दिखाई दे रहा है।

के बीच में हमें खंभे लगे दिखाई दे रहे हैं।

काउंटर के ऊपर कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

फ्रिज के पास हमें हीटर दिखाई दे रहा है।

में हमें खंबा लगा दिखाई दे रहा है।

खंबे के पास बहोत से पेड़ पौधे रखे हुए हैं।

हमें बहोत सी आइसक्रीमस दिखाई दे रही है।

मैंगो फ्रूटी रखी दिखाई दे रही है फ्रूटी के बगल में हमें डिब्बे वाली आइसक्रीम रखी दिखाई दे रही है।

आमने हमने हमें रोड दिखाई दे रही है रोड पर आदमी आता दिखाई दे रहे हैं।

घर के नीचे बहोत सी हरी हरी घास लगी हुई हैं।

साइड वाले खंभों के पीछे हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के सामने सिलेंडर रखा है सिलेंडर के बगल में हमें एक येलो कलर की बोरी दिखाई दे रही है दुकान के बगल में हमें ब्लू कलर का ड्रम दिखाई दे रहा है ड्रम के आगे हमें बहुत सी बोरियां रखी दिखाई दे रही हैं।

खंबे के पास एक साइकिल खड़ी दिखाई दे रही है।

महिला के पास एक पेड़ लगा दिखाई दे रहा है।

मकान के पास बहुत से पोस्टर्स भी लगे हैं।

सामने वाली बेंच पे एक महिला और एक बच्चा बैठा हुआ है बच्चे और महिला बैग में कुछ कर रहे हैं।

ऑरेंज कलर की कार दिखाई दे रही कार का दरवाजा खुला हुआ है।

मूर्ति के पीछे दो पोस्टर भी रखे हुए है।